चीजें हैं जो काफी बड़ी हैं यहाँ एक इंसान --

पेड़-पौधे काफी ही सुंदर-सुंदर दिखाई दे रहे --

जमा किया जाता है यहाँ एक पोस्टमैन रहता है जो घर-घर जाके उनके चिट्ठियां पहुचाता है।

काफी सारी महिला दिखाई दे रही है एक व्यक्ति मंच पे सबको समझाते दे --

सभी के नक्शे हैं यहाँ इसे समझने के लिए काफी सुंदरता के साथ में--

जो की बहुत अच्छे से बनाया गया है अंदर में काफी सारी लाइटे दिखाई दे रही--

औस्तें दिखाई दे रहीं ह --